कुछ इमैजिन कर रही है।

कुछ सेंटर है साइकिल है। उसके पास चेयर लगे हुए हैं।

पटाखे जल रहे हैं। एक स्टाल भी लगी है।

चप-चटाई बिछे हुए है झंडे गड़े हुए है।

अलग- बगल पेड़-पौधे लगे हुए हैं। बहोत ही पुराना है ईंट से बनी हुई है।

इस इमेज में एक बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में कैम्प लगे हुए हैं कैम्प के बाहर बहुत सारे लोग हैं कैम्प के बाहर --

रोड पर बहुत सारे कार लगे हुए पार्किंग किये हुए --

एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है बाहर से पोल है।